और इस फोटो के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे कागज से बनी हुई आकृतियां बनाई हुई है।

और उसके आगे छोटे छोटे गमलों के अंतर्गत बहुत ही सुंदर तरीके से पौधे लगे हुए हैं।

यह फोटो किसी किले या मस्जिद की नजर आ रही है।

और ये झोपड़ी ऊपर से घास फुस से रस्सियां से बांधकर बनाई गई है।

और इसमें एक प्रिंटिंग वाली मशीन कुछ अन्य मशीने भी--

यह फोटो किसी पेट्रोल पंप की नजर आ रही है जीसमें दो अलग अलग बक्से बने हुए हैं ताकि वा ज्यादा वाहन हो तो दूसरे से --

और ऊपर एक अलग ही डिजाइन का झूमर भी लगा हुआ दिख रहा है और रिसेप्शन पर भी कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और ऊपर कांच में कुछ अंदर बिस्कुट रखे हुए हैं और उसके ऊपर कई सारे भुजियों की थैलियां है।

इसमें दोनों साइड बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं जो एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए--

और बीच में टाइले लगाकर कुछ मैदान सा बनाया गया है और दो लोहे की रॉडो को बिन के अंदर सेट किया गया है।